यहां पर एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है उसपे कुछ लिखा है।

दो लोग खरीदने के लिए आए हुए है।

वॉल दिखाई दे रही है।